टीचर को काम करते देख रहे हैं।

पास ही एक कोड़ी भी पड़ी है।

इन सब ने सिर पर कैप लगाई हुई है।

नाइन एट् वन फोर थ्री सिक्स डबल जीरो टू थ्री है इनके ऊपर--

बैट पर टू कैप्स पड़ी हैं।

इसके पीछे काफी प्लास्टिक की बाल्टिया भी पड़ी हैं।

यहां से एक आदमी जा रहा है।

इनके पीछे चेयर्स पर इनका सामान पड़ा है।

यह काफी सारे बच्चे चेयर्स पर बैठे हैं।

सामने काफी बड़ी ब्लैक कलर के चेयर्स भी पड़े हैं।

ये अपना बैग लेकर जा रहें हैं ऊपर बादल दिखाई दे रहें हैं आस पास--

ये काफी सारी लड़कियां अपनी फोटो करवा रहे हैं।

तस्वीर है लेबोट्री में काफी सारे मशीन पड़ी हैं।

अलग अलग प्रकार के पोधै है।

इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है।